रोड पर एक बड़ा सा चट्टान भी है।

यह एक चिकन दुकान का दृश्य है चिकन दुकान के आगे लिखा हुआ है झारखंड चिकन सेंटर ।

एल_सी_डी टी_वी रखे गए हैं सारे एल_सी_डी टी_वी नए हैं सारे पर स्टीकर लगा हुआ है कुछ एल_सी_डी टी_वी बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं।

पेपर कापी रखा हुआ है और एक मॉनिटर भी रखा हुआ है।

अनेक प्रकार के वस्तुएं रखे गए हैं जैसे छोटे छोटे डब्बे।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है पेट्रोल पंप के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है और चारों तरफ शो प्लांट भी लगे हुए हैं बड़े बड़े किले के प --

पुरुष बच्चे भी हैं वाटर पार्क के दूसरे तरफ--

यह एक पेड़ पहाड़ का दृश्य है यहां पर चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और यहां पर किला भी बना हुआ है।

किला पुराने खंडरों के जैसा दिखाई दे रहा है उसमें भी छोटे छोटे घास लग गए हैं।

यह एक मॉल का दृश्य है इस मॉल के नीचे में व्हाइट कलर की टाइल्स बिछी हुई है और दीवार पर व्हाइट पुट्टी किया गया है।

मकान की दीवार पर एक घड़ी भी लटकी हुई है और एक व्हाइट बोर्ड भी लगी हुई है।

वर्क कर रहे हैं घर अभी बन रहा है।

नीचे में कुछ झाड़ियां भी हैं।

यह एक गाड़ी गैरेज का दृश्य है यहां पर एक फोर व्हीलर गाड़ी को साफ किया जा रहा है।

और बहोत सारा कंघी भी लटका हुआ है।

खिड़कियों में रॉड लगा हुआ है इसकी दीवार पर एक बोर्ड भी बना हुआ है।

यह एक बड़े से बेल्डिंग का दृश्य है बेल्डिंग में कांच लगा हुआ है।

बिल्डिंग्स के आगे और भी छोटे छोटे चट्टानें रखी हुई है।

इस पार्क में एक बड़ी सी मकान भी बनी हुई है।

एक बैंक का दृश्य है बैंक में लाइट जल रही है इसकी दीवार पर सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगे हुए हैं और दीवार पर पोस्टर भी चम--

रोड पे भी छोटे छोटे ठेले पे दुकाने खुली हुई है।

यहां एक काउंटर भी है काउंटर पर दो शीशे के डिब्बे में बिस्किट्स रखा हुआ है।

और एक व्यक्ति चाय पी रहा है यहां पर बहुत सारी बॉटल और गिलासे भी रखी--